ये होटल आपको शहर में देखने के लिए मिलेगा आप नही कही आ जा सकते है तो रात में आप यहाँ रुक सकते है।

इसका मतलब है की ये पहाड़ी खेत है और ये इसमे मक्का लगता है ये हमारे --

यहाँ पे बहुत ही बच्चे को खेलने का बहुत ही बड़ा ग्राउंड ये है और ये बहुत ही पुराना ग्राउंड है।